कुछ सन्दुक वहा अंदर खड़े हुए है दूध की टंकी भी रखी हुई है काउंटर के सामने काउंटर भी बना हुआ है एक आदमी टोपी लगाए जाकेट भी पहने है यहाँ आगे सीढ़ी भी लगी --